यहाँ पे बहुत बड़ा एक झरना है झरने के चारो तरफ से शेर का मुँह लगाया हुआ है उसमे से पानी निकल रहा है ।

और एक सामने घर है उसमें एक कार लगा हुआ है वहाँ पर ढ़ेर सारे लोग हैं।

पेड़ लगाये हुए हैं पेड़ को लकड़ियों से घेरा हुआ है और एक बिल्डिंग नज़र आ रहा है यहाँ पे चारो तरफ से बहुत सारे पेड़-पौधे हैं।